यह शायद पार्टी जोन है और यहाँ पे देखिये ये कुर्सी वगेरा ये भी लगा हुआ है बड़े-बड़े जो हमारे महलों में लगाया हुआ रहता वैसे और यहाँ पे बैलून से भी डेकोरेट किया गया है और झूमर भी है।

पराठा है प्लेट में जो स्वादिष्ट हैं।

--और यहाँ देखिये बादल कितने बढ़िया है ग्रीन ग्रीन हरे-भरे यहाँ पे खेत है जो यहाँ जाना न इसमें कैसे-कैसे सब्जी वगेरा ये सब फड़े होंगे यहाँ पे पेड़-पौधे है।

यह एक दुकान है जहां पर झारू ये सब बिकता हैझोला वोडा सभी यह एक मार्केट लग रहा हैं मार्केट में बगल में है यहाँ पे एक बिल्डिंग खाली लग रही हैं जहाँ पे छत वगेरा ये सब ने ढलाया हैं।

--और यहाँ पे स्टूल भी है और ब्लू कलर का यहाँ पे दीवार भी है यहाँ पे एक फीता भी लटका है रस्सी भी है यहां पे सभी चीज यहाँ पे है--

यहाँ पे देखिए जा रहे है कुछ आदमी और यहां पे सूर्य का प्रकाश भी आ रहा है और बड़ा सा तीन मंजिल बिल्डिंग भी है और देखिए यहां पे सभी आदमी कितने बढ़िया से सब कुछ कर रहे है।

--और यहाँ पे एक कुत्ता भी है देखिए टेबुल भी लगा हुआ है मोटरसाइकिल भी है एक दुकान भी दिख रहा है यहाँ से देखिए।

देखिए एक जनरल स्टोर है जहाँ पे डोलची भी लटका हुआ है दुकान भी है यहां पे ब्रश वगैरा ये सब चीज है लाल कलर का बिल्डिग है ।

यहाँ पे यह कुछ इसमें आदमी भी रहते है दूकान में बहुत बढ़िया चलती --